बहुत सुंदर ही दिखाई दे रहा है घर है बहोत अच्छा ही दिखाई दे रहा है साइड साइड में हरा-भरा घास भी है इधर एक मंदिर टाइप का भी दिखाई दे रहा है इधर एक पौधा भी है।

ये तो बहुत अच्छा ही अच्छा सजावट हैं कुछ यहाँ फंक्शन या शादी का पार्टी हैं या कुछ शादी का ही पार्टी रखा गया हैं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हैं बहुत अच्छा नज़ारा हैं जो भी सजाया हुआ हैं बहुत ही अच्छा ही सजाया हैं ।

उधर फ्लावर में लाइट भी जल रहा हैं इधर पौधा भी हैं उसमें भी लाइट जल रहा हैं अच्छा से अच्छा सजाया हुआ बोहत अच्छा प्यारा बहुत सुंदर दिख रहा हैं ।